कैटलॉग में लगाया गया है और ये अरेंएंट कंपनी के इलेक्ट्रिक फैंस से और कुछ--

टेबल फैंस भी यहां पर रखे हुए हैं जो पॉलिथीन से कवर करके रखे गए हैं।

लग रहा है और यह इलेक्ट्रिक वायर से सारे कंटेनर कनेक्ट है।

छोटे-छोटे पौधे लगे हैं आसपास में बहोत बड़े-बड़े पौधे भी लगे हैं पीछे की तरफ भी बहोत बड़ा पहाड़ है और यह पहाड़ पुरा --

सामने की तरफ एक गोलाकार चक्र लगा है जिसमें बहोत सुंदर लाइटिंग लगी हैं।

बाहर की तरफ बहोत सारे पोस्टर लगे हैं। बॉक्स ऑफिस के यह एक टॉकीज लग रही है।

एक गमला रखा है जिसमें पौधे लगा हुआ है और जिसमें तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है।

जो मेन गेट है उसे बहोत सारे फ्लावर से सजाया गया है।

यहां पर एक पोस्ट ऑफिस का बा बॉक्स पड़ा है जिसमें डाक डाला जाता है।

फूलों के तोरण से सजाया गया है सामने की तरफ जो काउंटर है।

यहां पर दो स्पून रखे हुए हैं एक काटे वाला है और एक सिंपल स्पून --

और इसके आसपास में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं एक गोलाकार चबूतरा बना--